घर के बगल में कुछ पौधे और बहुत सारे पेड़ भी हैं।

फोटो के सामने हमें एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रही है।

रेस्टोरेंट के ऊपर हमें बहुत सारे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

फोटो दाएं और हमें एक गेट भी देखने को मिल रहा है।

फोटो के सामने हमें एक दुकान भी देखने को मिल रहा है।

के पीछे हमें एक घर भी दिखाई दे रही है।

फोटो के सामने हमें एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रही है।

घर के ऊपर कुछ पंखे और लाइटें भी दिखाई दे रही है।

इस फोटो के सामने हमें एक गेट भी दिखाई दे रही है।